एक नदी गुजरा हुआ है और इसके आसपास में बहुत ही खूबसूरत दृश्य बनता है जिससे यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं।

यह एक बहुत ही खुबसूरत मंदिर है।

यह एक कार्यालय है जिसके अंदर अनेको करमचार्ये काम करते है।

इस ने फिशलन पट्टी झूले अच्छे अच्छे घर और बहुत ही अच्छे अच्छे फुले लगाये हुये है जो दिखने में बहुत ही अच्छा लगता है ।

यह एक कंपनी है जो एक हो हौंडा सर्विस वियन हौंडा का है।